कुछ दुकानें दिखाई दे रही है सामने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

दीवाल पे टंगी हुई कुछ फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं।

उसके सामने बोहोत लंबे पेड़ दिख रहे हैं। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

घास का मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जो काले और लाल रंग का है और उस पर पीले रंग की धारीदार लाइटें लगी हुई है।

सामने एक शॉप दिखाई दे रहा है।

हमें एक बहुत बड़ा सा खाली हाल दिख रहा है।

जहां कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक ए_सी दिखाई दे रहा है एक घड़ी दिखाई दे रहा है।

सामने एक डाकघर दिख रहा है।

हरे रंग की रोड के किनारे जालियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

कुछ फूल पीले हैं कुछ सफेद हैं कुछ गुलाबी हैं तो कुछ लाल हैं।

बहुत सारे खंभे दिखाई दे रहे हैं।